पहनने की सारी दुकान नजर आ रही है यहां सभी सामान मिलता होगा मुझे ऐसा--

यह बहुत ही अच्छा और बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है।

मुझे लगता है कि यह एक बहोत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ी --

यह एक बहोत ज़्यादा पुराना गेट दिखाई दे रहा है जो दिखने में काफी ऊँचा और काफी बड़ा दिख रहा है।

यहां कैमरे लगे हुए हैं और यहां सभी प्रकार के टायर मिलते हैं।